अलमारी भी बनी हुई है जिसपे ब्ल्यू कलर के--

और व्हाइट कलर की पीछे से डिग्गी खुली हुई है और एक लड़का उसमें कुछ काम कर रहा है।

एक मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है और टेबल के साथ में।

अ झूला दिख रहा है और सामने हलग अलग प्रकार के वाटर पार्क में झूले बने हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक होल दिख रहा है और उस होल में नीचे एक--

तीन चार पादरी खड़े हैं जो हाथ में मोमबत्ती ले के खड़े हुए हैं एक जो है हाथ में मिसाल लेकर खड़े हुए हैं।

बहोत सारे वाहन खड़े हुए है मोटसाकले मोटरसाइकिले स्कूटी कार है और बिल्डिंग के सामने बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुएं--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

टीचर ने व्हाइट कलर की ड्रेस डाली है।

और एक आदमी बैठ के खाना खा रहा है कुर्स टेबल पर।

वाहन खड़े हुए है मोटरसाइकिले है साइकिल है।

और डॉल्स रखी है और सामने बहोत सारी बुक्स रखी है।

दुकान का चित्र दिखाया गया जिसमें बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है।

सजावटे भी लटक रही है सामने एक--

और आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं और सामने सड़क जा रही है जहां से बहुत सारे वाहन आ जा रहे हैं कार भी जा रहे हैं एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में सामने दीवार पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमे एक दुकान का चित्र दिख रहा है जिसमें बहोत सारे--

इस चित्र में हमें एक बहोत बड़ा खेल का मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ खिलाड़ी--